और दूसरे खाने में कुछ व्यक्ति नाच रहे हैं और तीसरे में कुछ व्यक्ति लड़ाई भी कर रहे हैं।

और पीछे एक नीले कलर की बाइक दिख रही है।

और मैगी टंग रही है और भी बहोत सारा सामान टंग रहा है।

हाथ जोड़े और इसमें लकड़ी का गेट लगा हुआ है।

इस फोटो में एक पाइप रखा हुआ है और एक बाइक भी खड़ी हुई है।

इस फोटो में एक बहुत बड़ा बैंकेट हॉल है।

यह एक रेस्टोरेंट या ढाबा हो सकता है।

और ऊपर मीटर भी लगा हुआ है और नीचे मेज पर कुछ सामान भी रखा हुआ है।